अगल बगल पेड़ पौधे हैं आसमान पूरा साफ है।

घड़ी तागा हुआ है गेट लगाया हुआ है और सामने रैक बनाया हुआ है।

बगल में गेट हैं गेट ऑरेंज कलर का है।

उसमें तार लगाया हुआ है छोटे से पोस्टर भी रखा हुआ है जो वाइट कलर का है।

सामने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है उसपे बुक स्टोर लिखा हुआ है और सामने कुछ कुछ पोस्टर भी टांगे हुए हैं।

बहोत सारी खिड़कियां बनाई हुई है छोटे छोटे रैक बनाए हुए हैं।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

यहां पर रोड का दृश्य दिख रहा है।

रैक में बहुत सारे क्रीम पाउडर रखा हुआ है और लाइट जल रहा है।

नीचे जमीन है जमीन पे पेंट किया हुआ है और और उस पर एक बड़ा सा पेपर रखा हुआ है चार्ट पेपर ।

एक ये छोटा सा टिकट रूम जैसा बनाया हुआ है।